डेकोरेशन किया गया है साइड मे हमे शंकर पार्वती जी की फोटो दिखाई दे रही है मूर्ति गौरी बनी हुई दिख रही है।

माला पहने हुए है और यहाँ बहुत सुन्दर डेकोरेशन किया गया है गेंदे के --

और हमे ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है जोकि वाईट और ब्लू कलर का है।

ए और हमे सामने दो घर बने हुए दिखाई दे रहे है जो कि --

पे बहोत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है।

हमें पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं आसमान दिख रहा वाइट कलर का।

रखी हुई दिख रही हैं और ऊपर हमें टीन दिखाई दे रहा है।

और हमें नीचे भी बहुत सारी हरियाली दिखाई दे रही है कहीं-कहीं मिट्टी भी दिख रही है।

हमें इस इमेंज में बहोत सारे पत्थर दिखाई दें रहे हैं।

आदमी हमें चार-पाँच आदमी सीढ़ियों के ऊपर खड़े हुए दिख रहें हैं और दो तीन चार आदमी हमें सीढ़ियों के नीचे खड़े हुए दिखाई दे रहें हैं।

हमे सामने बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसपर लिखा है बंधन बैंक --